नीचे हरे रंग की दरी बिछाई गई है।

कुछ फल भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और एक दिया जल रहा है।

बिजली का एक खम्बा दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए है।

इस फोटो में एक विद्यालय दिखाई दे रहा है जहाँ खाली मैदान है एक बस खड़ी हुई है जिसका कलर पीला है दो पेड़ यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे गमलों में कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।